और पतले है और हरे कलर के है घने-घने पेड़ है और पेड़ो के आगे मिट्टी है जो कट्ठे कलर की हैं।

तरह की मशीनें भी रखी हुई है ट्रेड मिल के ऊपर एक आदमी --

वॉकिंग कर रहा है जिनके साइड में जो गेट हे उसकी खिड़किया कांच की है।

कांच की बर्निया दिख रही है कुछ स्टील की बर्निया दिख रही है कुछ कांच के शोकेष रखे हुए है शोकेष के अंदर --

फोजल के सामने दो टू व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है।